यहां पे एक मंच बनाया गया है मंच के ऊपर तीन लड़के हैं।

एक पेड़ दो भाग में बटा हुआ है उसी के बीच में एक लड़का--

नीचे काफी साफ सफाई किया गया है देखने में बहोत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है।

यहां पे चारो बगल पत्रे का पत्रे से तोपा गया है और चारों बगल बाउंड्री मारा गया --

र रनिंग करने वाला भी लगाया गया है बहोत सा--

और बॉक्स बॉक्स बहुत सारा सामान नीचे साइड में रखा गया है।

और यहां उधर साइड में भी एक अंकल जाते हुए दिख रहे इधर एक लड़की--

लकड़ी का बुरादा जैसे रखे गए हैं और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और एक सर ऊपर बोर्ड पे लिख लिखे हुए है--

मक अन आगे साइड में लड़के और लड़कियां--